ये जो है मिल्क मिल्‍कशेक का दुकान है जूस का दुकान है जूस पीने से आदमी स्‍वस्‍थ्‍य रहता है हेल्‍दी रहता है और अ ठंडा चीज होता है जिससे कि दिमाग भी शांत रहता है ये बहोत अच्‍छी चीज है।

यह जो है मॉल है इस मॉल में जो है बहुत सारा सामान मिलता है आदमी को आदमी का सभी सामान एक ही जगह मिल जाता है और कही जाने का जरूरत नहीं होता है इसलिए सभी को मॉल आना चाहिए और सामान का खरीददारी करना चाहिए।

अ यह जो है मॉल का दृश्य है यहां पर सभी आदमी को आना चाहिए सभी समान खरीदना चाहिए आ और यहां पर ए एक फायदा है कि सभी सभी आदमी को जो है सभी समान जो है एक जगह मिल जाता है इसलिए सभी को जो है मॉल आकर के खरीददारी करना चाहिए मॉल बहुत ही अच्‍छा है समाज के सोसायटी के लिए बहुत सुन्दर --

ये जो है जिम सेंटर है यहाँ पर लाेेग अपना आते हैं अपना शरीर को स्‍वस्‍थ्‍य रखते हैं व्‍यायाम करते हैं और जाकर के जो व्‍यायाम करके अच्‍छे दिखते हैं सुन्दर दिखते हैं सभी को सुबह-सुबह व्‍यायाम करना चाहिए।

घर है यह जाे है प्रधान डाकघर बहुत ही सुंदर है बहुत ही नजारा है इसमें लाल कलर का पेंट किया हुआ है और इसमें एक बोर्ड लगा है जिसमें कि प्रधान डाकघर लगा है अंदर में बाईक भी लगा है ऐगो एक सिक्‍योरिटी गार्ड भी है बहुत सारा जो है फूल भी लगा है डिजाईन भी बना हैं।

बरामदा में जो पोल लगा हुआ है पोल में बहुत सुन्‍दर-सुन्‍दर डिजाईन बना हुआ है कारपेट भी अच्‍छा बिछाया गया है एक उजला है एक डिजाईन वाला हैै बहुत ही सुन्‍दर एक पंखा भी है जो टूटा हुआ है एक बुढ़वा वहाँ पे बैठा हुआ है |